इस फोटो में रात का समय दिखाई दे रहा है यहां पर काफी सारी बाइक और एक्टिव खड़ी हुई हैं।

यहां पर जी इनके पास एक टेबल है जिस पर इन्होंने काफी सारे है।

यहां पर दिन का समय है। दूर-दूर तक घास मिट्टी और पेड़ ही दिखाई दे रहे हैं।